यहां पे मुझे कुछ पलस्तर किया जा रहा है और--

मुझे यहां पे कुछ लकड़ी के खंभे भी नजर आ रहे हैं।

कुछ गाड़ियां चल रही है और एक ट्रक भी चल रहा है। आसपास मुझे हरे भरे पेड़ पौधे और जमीन दिखाई दे रही है।

नजर आ रहे है और बहोत सारी लाइट्स भी यहां पे जल रही है।

उनके साथ मुझे बाउंड्री में दिखाई दे--

गाड़ी चल रही है और आस पास मुझे बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और क्यारियाँ भी नज़र आ रही हैं।

रूट लगा हुआ है और बहुत सारी झाड़ियां भी नजर आ रहीं हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक--

और आस पास मुझे बहोत सारी बिल्डिंगे और हरे भरे पेड़ भी नजर आ रहे है।

यहां पे मुझे बहोत सारे हरे भरे पेड़ और--

यहां पे मुझे चेयर्स हैं ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है और एक--